रेड और येलो कलर का है इसमें सामने की तरफ लिखा हुआ है डी.पी.एम. ऑफिस भागल --

यहाँ पर पुरे में कुछ पीले कलर की सुखी घांस और हरे-भरे पौधे भी हमे दिखाई दे रहे हैं ।

इसमें बाजार लिखा हुआ है येलो कलर का और इसके बाहर बहुत सारे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं इसके बाजू में भी एक दुकान बनी हुई है।